यह फोटो एक मेडिकल की है।

इसमें एक आदमी छपा हुआ है।

खिड़की भी है और उसके साथ है ए_सी का स्विच बना हुआ है।

और यहां पर लाइट है और एक पंखा भी है और फायर ब्रिगेड भी है।

और यहां हरे पेड़ पौधे भी हैं।

इसके बीम नीले कलर के बने हुए है यहां पर नीले कलर का बोर्ड भी लगा हुआ--

लग रहा है और यहां लोहे की ग्रिल भी है।

यह पुरानी रसोई को एकदम नई रसोई बन रहा है।

यह दुकान एक प्रोटीन की है।

बहुत सी चीजें पड़ी हुई है।

अंदर सामने की ओर एक दुकान है।

इसमें हमें एक हॉस्पिटल दिखाया गया है।

आस पास हरे पेड़ पौधे हैं।

यहां नीले और सफेद रंग का बेड है।

इसका रंग सफेद कलर का है।

और इनके पीछे इनके बेड लगे हुए हैं।